नमस्कार इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है जोकि एक अधिकांश अपडेट ट्यूटोरियल है नाकि एक पूर्ण लम्बा विडियो
किसी ने मुझे इंगित किया कि मेरे रजिस्टर स्क्रिप्ट में मुझे किसी प्रकार की जाँच की आवश्यकता है यह देखने के लिए कि यूज़र उनके द्वारा उल्लिखित यूज़रनेम से पंजीकृत है या नहीं
अपने फॉर्म में वापस जाते हैं जोकि यहाँ है
यहाँ आप अपना पूरा नाम लिख सकते हैं
आप एक यूज़रनेम और एक पासवर्ड चुन सकते हैं
मेरे पास यहाँ यह वैल्यूस पहले से ही हैं
इनसे अभी छुटकारा पाते हैं
किन्तु हमें क्या चहिये जब हम यूज़रनेम चुन रहे हैं
उदाहरणस्वरुप मानते हैं मैं यूज़रनेम एलेक्स के साथ पंजीकरणरजिस्टर करता हूँ
डेटाबेस में हम यहाँ देख सकते हैं कि यूज़रनेम एलेक्स पहले से ही है
अतः हम क्या करेंगे कि यूज़रनेम के मौजूदगी की जाँच करेंगे
यदि यूज़रनेम पहले से मौजूद है हम यूज़र का पंजीकरण नहीं होने देंगे क्योंकि हम डबल यूज़रनेम नहीं चाहते हैं
यदि मुझे यहाँ पंजीकरण करना है मैं पासवर्ड डालता हूँ और यूज़रनेम एलेक्स चुनता हूँ
यूज़रनेम एलेक्स डेटाबेस में पहले से ही है
हमनाम की वजह से अभी इसे बदल देते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करें
मैं सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया
चलिए अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं
हम देख सकते हैं कि हमारे पास एलेक्स के साथ दो यूज़र नेम्स हैं
अब लॉगिन के दौरान यह परेशानी करेगा
पहले नाम की उपस्थिति यहाँ यह लॉगिन हो जाएगा
और यह उपेक्षित हो जाएगा
अतः यह आदमी सचमुच में डेटाबेस में कभी भी लॉगिन करने के सक्षम नहीं होगा
अतः इसे मिटा देते हैं
आप को किसी प्रकार के चेक बनाने की आवश्यकता होगी यह देखने के लिए कि यूज़रनेम पहले से मौजूद है
यह काफी सरल है
यह करने के लिए एक से अधिक तरीके हैं
किन्तु मैं सबसे सरल के साथ जा रहा हूँ और सम्भवतः सबसे प्रभावशाली तरीका जो काम करने जा रहा है
अपना डेटाबेस चुनता हूँ
मैं इसे ऊपर ले जाना चाहूँगा जहाँ सबमिट बटन चेक्ड है
अतः यह केवल डेटाबेस से जोड़ रहा है
मैं यहाँ अंदर हूँ
फिर यहाँ अंदर यूज़रनेम जाँचने के लिए मैं अपना कोड शुरू कर सकता हूँ
000231 000229 अब दिमाग में रखिये कि आप अपना चेक कहीं भी नहीं रख सकते हैं
सरलता के लिए अभी मैं इसे यहाँ रखता हूँ और बाकी की स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ
यदि यूज़रनेम मिल जाता है मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ
ध्यान रखिये जब आप अपनी वेबसाइट में पूरी लम्बाई का पेज इस्तेमाल कर रहे हों dieफंक्शन बाकी के कोड को काट देगा
अतः मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता हूँ
मैं चेक्स का जो अगले स्टेटमेंट के अंदर आपके पास हैं उनका आवरण करने की सलाह देता हूँ और स्क्रिप्ट को वाकई में नष्ट न करें
किन्तु यहाँ आपको सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि उस पर कार्य कैसे करें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं
हमें केवल एक क्वेरी टाइप करने की आवश्यकता है जो एक विशिष्ट यूज़रनेम के साथ रिकॉर्ड लेकर उल्लिखित करता है
अतः मैं यहाँ लिखूँगा नेमचेक क्वेरी
मैं वेरिएबल नेमचेक कहूँगा और यह एक माइस्क्ल क्वेरी होगी
मैं सरलता के लिए यूजरनेम चुनूँगा
यह हर डेटा को नहीं चुनेगा
अतः मैं यूज़र्स से यूज़रनेम चुनता हूँ क्योंकि यह यहाँ हमारे टेबल का नाम है
मैं लिखने जा रहा हूँ व्हेरे यूजरनेम इस इक्वल टो यदि हम यहाँ देखते हैं कि किसी का यूज़रनेम जो फॉर्म को जमा करता है वह वेरिएबल नाम यूजरनेम में है
अतः हम केवल यहाँ नीचे आएँगे और अब यूजरनेम टाइप करते हैं
अब यदि हम नाम एलेक्स चुनते हैं यह डेटाबेस में सभी रिकॉर्ड को चुनेगा जिसका यूज़रनेम एलेक्स है और अभी हम एक देख सकते हैं
अब यदि इस परिस्थिति में मुझे केवल एक रिकॉर्ड के साथ उल्लिखित करना होता यदि मुझे यूज़रनेम डाले उल्लिखित करना होता उदाहरणस्वरुप कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे
अतः इसलिए यूज़रनेम मौजूद नहीं होगा यदि कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे
अतः हमें एक फंक्शन की आवश्यकता है यह जाँचने के लिए कि कितने रिकॉर्ड्स मिले
आप यह काउंट वेरिएबल बनाकर कर सकते हैं
यह माइस्क्ल नुम रॉस
यह केवल रिकॉर्ड्स या रोस की मात्रा देगा जोकि हमारी नेमचेक नामक क्वेरी के अंदर हैं
अतः अभी इसे जाँचते हैं
मैं काउंट को एको करने जा रहा हूँ और फिर स्क्रिप्ट नष्ट करता हूँ
बाकी का कोड निष्पादित नहीं होगा
चलिए रजिस्टर पर वापस चलते हैं और मैं मेरा फुलनेम एलेक्स टाइप करता हूँ फुलनेम फिर यूज़रनेम चुनिए
मैं डाले चुनने जा रहा हूँ
पासवर्ड नहीं जाँचा जाएगा अतः हम इसे छोड़ सकते हैं
किन्तु मैं केवल इसके लिए इसे रखूँगा और रजिस्टर पर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि हमें शून्य वैल्यू मिली है
ऐसा इसलिए क्योंकि डाले वस्तुतः डेटाबेस में यूज़रनेम की तरह नहीं है
हालाँकि यदि मैं इसे एलेक्स में बदलता हूँ यह छोटा आ होगा
हमें कुछ स्ट्रिप टैग्स मिले हैं
केस सेंसटिविटी के साथ निपटने के लिए अच्छा है अतः यह एक और प्वॉइंटर है जब हम यूज़रनेम को महत्व देते हैं हम यहाँ लिखेंगे कि एसटीआर टो लॉवर केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हमेशा छोटे केस में बदला जाए
अगला हम करने जा रहे हैं मुझे खोजने दीजिये रजिस्टर क्लिक करें
हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू मिली
अतः चेक जिसे यहाँ हम देख रहे हैं यदि यह वेरिएबल हम एको कर रहे हैं शून्य के बराबर नहीं है फिर हमें यूज़र को बताने की आवश्यकता है कि यूज़रनेम पहले से ही पंजीकृत है
अतः यहाँ हम एक सरल इफ स्टेटमेंट और हमारा ब्लॉक बनायेंगे
फिर हम देख सकते हैं यदि हमारा काउंट शून्य के बराबर नहीं है मतलब इस स्थिति में यहाँ एक रिकॉर्ड उपलब्ध है जहाँ यूज़रनेम पहले से ही उल्लिखित किया है फिर हम अभी स्क्रिप्ट नष्ट कर सकते हैं और लिखते हैं यूजरनेम अलरेडी तकें या कोई और सूचना
यहाँ वापस आते हैं चलिए रिफ्रेश करें
हम एलेक्स चुन सकते हैं
मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ
आप देख सकते हैं कि हमें एरर यूजरनेम अलरेडी तकें मिली
यदि मुझे डाले टाइप करना था और एक नया नेम और पासवर्ड चुनता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ हम देख सकते हैं कि यह डेटाबेस में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है क्योंकि यूज़रनेम मौजूद नहीं है
अतः मैं इसे यहीं पर छोड़ दूँगा
आप देख सकते हैं कि हमें हमारे पंजीकृत यूज़र मिल गये हैं
एक एसटीआर टो लॉवर फंक्शन जोड़िये जोकि सबकुछ सरल रखने के लिए सचमुच में बहुत ही लाभदायक फंक्शन है
या आप अपने इफ स्टेटमेंट में एसटीआर टो लॉवर फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं
हालाँकि इसे सरल रखने के लिए मैं सलाह दूँगा कि सभी युज़रनेम्स को छोटे अक्षरों में बदलिए
आप को यह लॉगिन स्क्रिप्ट में भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है
जो कुछ भी यूज़र लॉगिन बॉक्स में टाइप करता है आपको छोटे अक्षरों में बदलने की आवश्यकता है
मैं आपको इसके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ
कुछ एरर्स खोजने का यह एक अच्छा तरीका है
इनकी कोशिश करें किन्तु यदि आपको कोई मदद चाहिए तो कृपया मुझे ई मेल करें
सुनिश्चित कर लें कि आप अपडेट से जुड़े रहेंगे
देखने के लिए धन्यवाद
मैं रवि कुमार आय आय टी बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ